यहां पर एक कम्पाउन्ड दिखाई दे रहा है उसमे लोहे का गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है अंदर काम चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है और हमे अंदर बहुत सारी इंटे दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे रंग-बिरंगे खिलौने दिखाई दे रहे है और यहाँ पे बहुत बड़ी दुकान नज़र आ रही है और यहाँ पे चादर दिखाई --

मे नई-नई दुकान खुली हुई नजर आ रही है जिसमें बहोत सारे रंग बिरंगे फुग्गे दिखाई दे रहे है जिसमें नीला कलर और लाल कलर का फुग्गा दिखाई दे रहा है और हमे यहां पर टेबल नजर आ रहा है।

एक बहुत बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है उसमें पोस्टर में लगा बॉडी बिल्डर लगा हुआ दिख रहा है और यहाँ वेटलिफ्टिंग की मशीन दिखाई दे रही है और हमें लाल कलर का बहुत सारा मेज दिखाई दे रहा है।

ऑरेंज कलर की दीवारें दिखाई दे रही है जो की बहुत बड़ी नजर आ रही है और हमे बहु-- हरे- भरे बहुत बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका कलर सफेद कलर का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें बहोत लम्बी खाड़ी सड़क दिखाई दे रही है जो के बहोत दूर जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर हमें बहोत सारे पेड़ नज़र आ रहे है।

पर एक कलर की बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है और यहाँ पर बहुत लम्बी खाली सड़क दिखाई दे रही है जो की बहुत दूर तक जाती हुई नजर आ रही है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ी मंदिर दिखाई दे रही है उसके ऊपर एक बहोत बड़ा लाइट नजर आ रहा है।

एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो की सफ़ेद कलर की है और हमें यहाँ पर दो बड़े-बड़े पिलर दिखाई दे रहे है जो सफ़ेद कलर के है ओर मंदिर के अंदर हमें मूर्ति देखाई जो दे रही है --